अपने पसंदीदा सामान खरीद कर ले जाते हैं।

च तीन चेयर है जो कि वाइट रंग की है और ये हं--

बच्चे खेलते हैं घांस इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को ज्यादा चोट ना लगे और--

ऐसा ही एक वाइट कलर का--

हमारे जरूरत के सारे सामान रखे हुए हैं इसका फ्लोर का--

ये एक स्विमिंग पूल का जगह है जहां पर बहुत सारे--

मार्केट का स्थान है जहां पर बहुत टेंपो लगे हुए हैं और यहां पर--

यह एक पं जो पोस्टर है वो लगा हुआ है इसके सामने बहुत सारे आदमी खरे हैं आदमियों को--

आदमी उस पोस्टर को देख रहे हैं और फिर कोई--

आपस में बातचीत भी हो रही है उसके ऊपर एक पोस्टर है जो कि--

ये एक दुकान है जहां पर बहुत सारे टॉय तरह तरह के बच्चों के खेलने के लिए--

मिनट आएगी नहीं खेलते हैं आपको भी पता है कि बच्चों को --

एग्जाम हॉल है और बच्चे अपने-अपने एग्जाम को क्लियर कर के बैठे --

काफी क्लियर काफी साफ--

दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है कोई भी आदमी दिखाई दे नहीं दे रहा --

खड़ी है एक कार नहीं है दो कार है।

ये एक शॉप है यहां पर फल बेचा जाता है और यहां पर एक आदमी है जो कि खड़े हैं।

साथ साथ एक खरीददार भी है।

कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग अपने बैठकर पढ़ाई करते हैं जैसे कि यह एक--

बच्चे को पढ़ाहा रहे हैं।

ये जो स्थान कर सकते थे ये मार्केट का स्थान है जहां पर क बहुत सारे गाड़ी चलते हैं।

और सादर अस्पताल जो है गोपाड़गंज में है इसके आगे एक कार लगा हुआ है जो कि उजले रंग का है।

लोग डेकोरेट बर्थडे पार्टी जस्ट लाइक इसका घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है।

यहां पर बैठने का भी जगह है काफी ज्यादा--

ये जो जगह है वो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है।

ये जो जगह है ये कॉफी शॉप कह सकते हैं यहां का वातावरण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

काफी अट्रैक्टिव लग रई है।

यहां पर गी ग्रीन पौधे भी है पेर भी है पेर को सजाया हुआ है जो कि--

जो कि बहुत सुंदर दिखने में--

यहां पर यूनियन बैंक लिखा हुआ है इसके आगे बहुत सारा--

लेकिन इसके आसपास बहुत भिर है।

ये जो जगह है ये एक घर का --

में अंदर लाइट पड़ रही है।

और बाहर जो पेर है--

और यहां पे चेयर जो है वो काफी ज्यादा सुंदर है।

ये एक क्लासरूम की तरह लग रहा है जहां पर बहुत सारे--

जो कि घूमती हुई दिखाई दे रही है ये जो रूम है वो काफी ज्यादा --

इसका जिसका आधा पार्ट ही दिखाई दे रहा है।

और यहां पर अनगिनत डब्बे हैं।

उस पर देखें तो एक बड़ा सा ---

ये जो स्पेस है इसको हम लोग एक।

यहां कुछ आदमी है जो कि बैठा हुआ है।

तो बहुत सारी सामग्री इसमें खाने के लिए मिलती है।

के सामने एक डस्टबिन रखा हुआ है।

और बीच में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं।

दोनों तरफ पेड़ पौधे घास हरियाली लगी हुई है छाई हुई है।

ये जो स्पेस है ये एक पहाड़ से रिलेटेड है जहां पर एक आदमी उस पहाड़ को छूता हुआ नजर आ रहा--

और इसके पास में खाई भी है।

ये जो प्लेस है यहां पर बहुत सारे --

और नीचे एक इंसान खड़े हैं।

और आसपास बहुत सारे।

से रिलेटेड है इसके आसपास।

यह जो प्लेस है यह काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है इसके आसपास बहुत सारी --

यह एक बाहर रोड का सीन लग रहा है जहां पर एक--

जिसको जिम करने में उपयोग किया जाता है।

बहुत ही हरियाली है सारा मैदान हरा भड़ा दिखाई दे रहा है।

को हम लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं।

यहाँ पर लोग अपने-अपने --

पास काफी खाली दिखाई दे रहा है इसके बगल में एक--

इसको कह सकते हैं कि ये रॉड का है।

ये एक रूम का सीन है जहां पर बिछौना लगाया हुआ है जिसको हम लोग बेड कहते हैं जिसके बगल में--

एक अल्मिरा है जिस पर जूता सरियाया हुआ--

और इसके जो बिछौने हैं।